और यहां दो आदमी खड़े हैं और एक आदमी यहां बैठा है।

यहां बहोत सारी मशीने जिम की रखी हुई हैं।

यह बहोत सुंदर मंदिर नजर आ रहा है।

यहां अमन पूजा हो रही है और सब बच्चे आदमी बैठे हुए हैं।

और यहां मेज भी कुर्सी भी रखी हुई हैं।